और दूर एक मंदिर बना हुआ है और--

और उसके नीचे पांच ग्लास रखे हुए है और उसके नीचे--

और एक दीवार दिखाई दे रही है और एक खिड़की दिखाई दे रही है।